ऊपर अ टीन का सैड दिखाई दे रहा है। नीचे अ गुलाबी कलर का स्टेज बना दिखाई दे रहा है। बाजू में पंखा बना दिखाई दे रहा है। आजू बाजू झाड़ लगे दिखाई दे रहे --

झंडा दिखाई दे रहा है। लाइट लगा दिखाई दे रहा है। नीचे आजू बाजू दिवालें दिखाई दे रही हैं जोकि ई टाइल्स जैसी बनी दिखाई दे रही है।

यहाँ एक गोदाम दिखाई दे रहा है गोदाम का नाम आनंद वस्त्रालय दिखाई दे रहा है ऊपर बैनर लगा दिखाई दे रहा है।